फोटो ले रहा है और अगल-बगल कई सारे छोटे-छोटे पत्थर भी दिख रहे हैं अगल-बगल घास भी हैं ।

यह एक मंदिर है मंदिर के बैक साइड दिख रहा है एक हरे खंभे पे मुर्तिया लगी हुए है यहाँ पे बगीचा भी है बहुत सारा हरा भरा पेड़ लगे हुए हैं।